यह एक रेस्टोरेंट है जिसमें वेज और नॉनवेज दोनों तरह के व्यंजन मिलते है।

यह एक पार्क है। यहाँ पर हम आकर घंटो सुकून से बेेठ सकते हैं।

यहाँ पर आप साड़ी लेने के लिए आ सकते हैं जो कि सादी बियाह मे लेने के लिए अच्छे प्राइस मे मिलते हैं।

यहाँ देखने में बहुत ही खुबसूरत मॉल लग रहा है यहाँ कपडे बहोत ही अच्छे प्राइस में हम ले सकते हैं।

यह बसें यात्रियों को अपने-अपने शहर ले जाने और ले के आने का काम करती हैं। इसके द्वारा सब अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं।

एक बाइक बनाने की दुकान है जहां पर आप अपनी पुरानी और खराब हुई बाइकों को लेके आ सकते हैं और उसे अच्छी सर्विसिंग करा सकते हैं।

यह एक पार्क में बनाया हुआ रेस्टोरेंट है जोकि बोहोत ही खूबसूरत है।

बहोत से पेड़ लगे हुए हैं जो कि बहोत ही अच्छे और लुभावने नजर अ रहे हैं।

एक पार्क है जिसमें बोहोत ही खूबसूरत एक लाइट लागी हुई है जिसकी रोशनी बोहोत ही बेहतरीन और लुभावनी लग रही है।